पीछे खिड़की है जिस पे ब्राउन कलर का पेंट है एक दरवाजा दिख--

दूर एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो की सफेद रंग की है।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

और ये फुटबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं।

ज़ीरो डबल टू फोर और यहां पे सीड़िया नजर आ र--

और यहां पर खाने पीने के लिए टेबल और सीट लगी हुई है।

चेयर का कलर है ये रेड पीछे जो है फूलो से भरी हुई एक बोरी नजर आ रही है।

सोने के लिए सोफे नज़र आ रहे--

बैठने के लिए चेयर रखी है सोफे भी रखे हैं।

दिन का समय है तारे दिख रही है बिजली वाली।

कुछ फ्रूट्स की रेडिया दिख रही हैं एक अंकल साइकिल पे जा रहे हैं।

दीवार का कलर है सफेद स्कूल का--

नंबर भी लिखा है ट्रिपल नाइन वन जीरो थ्री एइट नाइन थ्री जीरो ।

और दो भैंस दिखाई दे रही है जो रोड पे चलती हुई कहीं जा रही--

एक गाय है जो सो रही है शायद वह गाय का बच्चा है।

फूल जो है सारे असली फूल है नकली फूलो का यूज नही हुआ है।

बीच में लगी हुई हैं शेरा वाली माता की फस्ट फोटो --

टी शर्ट पहनी हुई है और जूते हैं उसके ब्लू --